ये जो एक स्टेज दिख रहा है रेड कलर जो कालीन बिछा हुवा दिखा रहा है चारो साइड गुलदस्ते रखे दिख रहे है बीच में एक सोफा दिख रहा है।

ये-ये आसमान दिख रहा है हल्का सा काफी बड़े-बड़े पेड़ दिख रहे है छोटे-छोटे से पेड़ दिख रहे है घास दिख रहे ये पत्तिया दिख रहे है।

ऊपर जो है आसमान दिख रहा है बादल दिख रहे है ये जो एक स्कूल दिख रहा है काफी खुला जो है मैदान दिख रहा है एक बाइक दिख रही है खड़ी हुई साइड में जो है पेड़ ही पेड़ दिख रहे --

तालाब छोटे छोटे पेड़ दिख रहे दिख रहे हैं।

यहाँ आसमान दिख रहा है बादल दिख रहे है काफी बड़े बड़े पेड़ दिख रहे है मॉडल दिख रहा है डिज़ाइन --